दिख रही है चित्र में मुझे बकरी का कलर व्हाइट और ब्लैक दिखाई--

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे हवेली दिखाई--

कई सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

चम्मच स्टैंड और कटोरा दिखाई दे रहा है।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

चित्र में मुझे डस्टबिन दिख रहे हैं और चित्र में कई सारे लोग खड़े दिख रहे--

चित्र में मुझे हॉल पे रखी हुईं बिचें दिख रही हैं।

चित्र में मुझे दो लड़के खड़े हुए शॉप पे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे बिल्डिंग के अंदर कई सारे रखे आइटम लाइटिंग पे दिखाई--